दीवाल पे खिड़कियां लगी हुई है जो कांच की बनी हुई है।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

दुकान के दरवाजा है दरवाजे में कांच लगी हुई है।

बोर्ड पे राज ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा हुआ है।

एक पहाड़ सा बना हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारी लाइटें जल रही है जो हरे और नीले रंग की है।

ऊपर झोपड़ी सी बनी हुई है जो लाल हरे रंग की है। एक टीन शेड पड़ा हुआ है।

एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

एक गोदाम है गोदाम में बहुत सारी लाल बोरियां रखी हुई है उनमें आलू भरे रखे हुए हैं।

पीछे एक दीवाल है दीवाल के पास में बहुत सारे बड़े हरे पेड़ लगे हुए हैं।

एक पे यूनियन बैंक लिखा हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है।

नीले खिड़की लगी हुई है एक हत्था लगा हुआ है दो मीटर लगे हुए हैं।

कुछ पेड़ लगे हुए हैं एक ऊपर सफेद रंग का पर्दा पड़ा हुआ है।